ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है सफेद रंग की सफेद और नीला आसमान है बालकनी दी गई है और--

कुर्सी रखा गया है जो लाल रंग की ओर काले रंग की है आईने लगाए गए है जो पीछे एक साइड पे एक दीवाल है जो नीले रंग की दीवाल है।

और एक बिल्डिंग बनी हुई है जो सफेद रंग की बालकनी बनाई गई है बड़ा सा एक दीवाल खड़ा जो सफेद रंग की है।

बगल मे एक आदमी जा रहा है जो नीले रंग का कपड़ा पेहना हुआ है।

ऊपर बना हुआ जो कत्थई रंग का है अगल-बगल पेड़-पोधे हरे पत्तियों पर घास सारे रंग के सभी नीला आसमान है नीचे पूरी मिट्टी है।

एक घर बना हुआ है जो सफेद रंग का है हरी घास है दिवालें है कत्थई रंग की सफेद नीला आसमान है ख खंबा गड़ा हुआ है लगी हुई है सफेद रंग की खिड़की बनी हुई है सफेद है।

रंग के बगल में खंबा गढ़ा हुआ है जो नीले रंग की है । सफेद नीला आसमान है गार्डन है फर्श --

दी-दीवाल खड़े है जो सफेद रंग की है अगल- बगल पेड़-पौधे हरी पत्ते सफेद नीला आसमान है सामने से लाइट की रोशनी आ रही है।